और लोहे के खंभों के पास डी_जे रखा है।

ऊपर लाइट लगी हुई है और बहुत से खंबे लगे हुए हैं।

इस चित्र में हमें एक बाग दिखाया गया है।

यहां पर हमें एक लकड़ी की अलमारी लगाई दिखाई गई है।

जिसके पास एक एक नाव खड़ी हुई है।

और इसके अंदर नीचे टाइल्स भी लगाई गई है।